एक बूढ़े आदमी बैठे हुए फोन पे बात कर रहे हैं।

और चेहरे पे लगाने का मास्क जिसका नाम शेहनाज़ हुसैन लिखा हुआ है ।

ये एक सैलून है| यहाॅं पर लोग अपना हेयर कट करवाने अपने चेहरे पर मसाज करवाने के लिए आते हैं।

बड़े परदे पर सिनेमा देखते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ से आसमान भी दिखाई दे रहा है।